बहुत खूबसूरत साड़ी नजर आ रही है जो कि एक गुलाबी कलर की है और एक हरी कलर की है और पीछे में एक --

लोहे का कुछ सामान रखा हुआ है यहां पे नीले नीला कलर का एक--

यहां पर एक आदमी नजर आ रहा है।

छोटासा बोट दिख रहा है। उसमें कुछ लोग बैठे हू खड़े हैं।

यहां पर लाइट से सजाया गया हुआ है ।

एक पीला कलर का ऑटो जैसा कुछ बना हुआ है यहां पर लाइट से सजा हुआ है ।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं यहां मस्जिद बहुत खूबसूरत लग रही है।

यहां एक कपड़े की दुकान दिख रही है।

जिसने पीला कलर का फ्रॉक पहना हुआ है वहां पर फोन पे का क्यू_आर कोड दिख रहा है।

यहां ए पीपल्स यूनिवर्सिटी दिख रहा है।

नीले कलर से प्यूपल लिखा हुआ है।

यहां एक नई कार नजर आ रही है।

यहां हॉस्पिटल ब्राउन कलर से पुता हुआ है।

यहां पर गुलाब के भी पेड़ दिख रहे हैं।

यहां एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

यहां बहोत गंदगी दिख रही है।

यहां कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

और कुछ गायबंधी हुई है।

अच्छीवातावरण है यहां पर पेड़ से--

यहां पर पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

दिख रहा हैजो किलाइट से सजा हुआ है।

औरआसमान नीला कलर का है।

यहां पर एक काला कलर का चश्मा भी नजर आ रहा है।

मोबाइल की दुकान है जो कि विवो की मोबाइल रखी हुई है।

यहां पर सब्जी की दुकान लगी हुई है।